आठ आठ गु मोंगरी मछली है और एक गमला में है उसका बहोत ही बड़ा-बड़ा हैं।

ये एक सब्जी मार्केट है ये बहोत यहाँ बहोत सारा सब्जी है और--